और कांच के अंदर भी काफी रकम की मिठाइयां रखी हुई है।

पीछे दो लड़के लड़कियां भी बैठे हुए हैं।

साथी यहां पर राख भी पड़ी हुई है और एक पीले रंग का डब्बा भी रखा हुआ है।

यह अव यहां पर काफी सारे टोटें दिख रहे हैं।

और यहां किनारे बैठने के लिए सीट भी बनाई गई है।

और यहां पर काफी खंभे भी लगे हुए हैं ऊपर आसमान बिल्कुल साफ है और यह सीन काफी हरा भरा लग रहा है।

और ऊपर पंखा नहीं लगा है यहां के चफेद लाइट काफी रोशीन रोशनी दे रही है।

और टेबल पर लाल कपड़ा बिछाया हुआ है।

और यहां पर एक मकान भी बना हुआ है जो सफेद चद्दर से ढका हुआ है।

और ऊपर आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली हो--

और पीछे काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े दिख रहे है।

और ए_सी भी लगा हुआ है साथ में दो बल्ब भी लगे हुए हैं और यहाँ पर काफी सारे लाइटिंग भी लगी हुई है।

प्रो प्रोजेक्टर टेबल भी लगा हुआ है जिस पर माइक रखा है।

और काफी बड़ा हैं नीचे दो चार कंकड़ भीं पड़े हुए हैं।

यहां पर एक रिपेयरिंग सेंटर है यहां पर ये टी_वी रखा हुआ है और साथ ही एक बगल में गेट बना हुआ है।

माला भी चढ़ी हुई है और रिपेयरिंग का रिमोट भी है।